यह एक योगा क्लासेस लग रहा है जिसके अंदर कई सारे छोटे-छोटे बच्चे शामिल है एक बड़ा शिक्षक दिखाई दे रहा है।

यह एक सरकारी कार्यालय लग रहा है। इसके बाहर एक चेक्स वाला लड़का उसने बैग टंगेया हुआ है। साइड मे एक --

दो लोग चल के जा रहे है यहा पे पेड़ दिखाई दे रहा है बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बिजली का टायर वायर दिख रहा है खंबा दिखाई दे रहा है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान लग रही है जिसका माँ चंचला नाम हुआ है जिस लाल कलर से लिखा हुआ है जिसमे फ्रूट अ रखे हुए है एक आदमी दिख रहा है जिसने--

यहा एक हाइवे रोड लग रहा है जिसमे एक बाइक मे तीन लोग जा रहे है सी.एन.जी ऑटो दिखाए दे रही है।